यह एक मंदिर का फोटो है मंदिर में काफी मूर्तियां रखी हुई हैं।

यह पढ़ने वाले बच्चों का बे बिस्तर लगा रहा है।

शोरूम के अंदर एक ओला स्कूटी लगी हुई है।

यह एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम है अंदर कई स्कूटीयां लगी हुई है।

यह होटल ब्लू बर्ड का फोटो है सामने आई लव ब्लू बर्ड लिखा हुआ है।

पीछे दीवाल के पास प्लाईवुड रखा हुआ है फोटो में सामने क काफी फेविकोल के डब्बे रखे हुए हैं।

स्टील की ट्रे लोहे की कढ़ाई के ऊपर रखी हुई है।

यहां पे लाल और सफेद रंग का बैलून लगा हुआ है।

रेस्टोरेंट में काफी लोग आए हुए हैं टेबल पे कैलकुलेटर रखा हुआ हैं।

रेस्टोरेंट में नीली और लाल रंग की लाइटें जल रही है सामने कुछ बैलून भी रखे हुए है।

डेस्क का रंग नारंगी है डेस्क के अंदर स्टेफ्री रखी हुई है।